आपकी गाड़ी अगर डीजल वाली है तो डीजल मिलेगा आपकी गाड़ी पेट्रोल वाली है तो पेट्रोल मिलेगा।

सब कोई अपने-अपने काम मे बीजी है | ये अपना काम कर रहा है वो अपना काम कर रहा है दोनों मे एक चीज कॉमन है की दो टोपी पहना हुआ है ।

और जो यहाँ पे जो मार्बल की बनी हुई है ना बहुत ही खूबसूरत लगते है देखने मे ये घर बोहत खूबसूरत है।

बोहोत सारे डस्ट्बिन भी रखे हुए हैं जिसमे आप सामान फेक सकते हो। इसके अंदर जाके आप किसी से भी बात कर सकते हो। ये घर बहुत अच्छे है।